यह जाम यह जामताड़ा का रेलवे स्टेशन है यहां का नजारा बहुत ही बहुत ही अच्छा है शांत भी है।

यहां बहुत सारा फल है जैसे कि अनारस केला --

यह एक बहुत ही बड़ा नदी है यह किसानों के लिए खेती करने के लिए पानी ले जाने के लिए अच्छा होता है।

यह रूम है यहां पर बेड बहुत ही बड़ा है यहां दो लिए लाइटिंग लाइटिंग चेयर है।